सब कुछ सामान दिख रहा है बेंच भी है टेबल है ब्राउन कलर का।

रेड कलर की पट्टी से लिखा भी है लाइट भी जल रही है।

सामने बहुत सारा दुकान है और उसमें सारा सामान दिख रहा है क्यूआर कोड भी दिख रहा है।

पिक्चर भी चल रहा है पोस्टर --

येलो कलर का बहुत सारा खिरकी है बहुत ताला है।

दुकान है और बहुत सारा खिलौने हैं रंग बिरंगे खिलौने हैं।

फूल और पत्तियां दिख रही है गमले जगह-जगह दिख रहा है ऑरेंज कलर का एक ऑरेंज कलर का गेट लगा हुआ है।

और कार भी खड़ा है लग रहा है बगल में।

ये मॉल है मॉल में बहुत सारा सामान रखा हुआ है बहुत सारा।

अलमारी जैसा है उसमें भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

सामने मकान है और टेबल रखा हुआ है बीच में और--

साइड में एक मकान लंबा सा है।

छात्री की तरह हरा भरा है सब।

डेकोरेशन है घर द्वार भी बन रहा--

ब्लैक कलर का दिख रहा है हरा भरा पेड़ और पौधे दिख रहे हैं।

सामने दुकान है ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ है दो टो पोस्टर लगा है एक प्लेन है एक पिक्चर बना हुआ है।

साइड से मकान है सामने भी मकान है बीच में--

सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं एक--

ये गंगा जी के पास बड़ा सा जहाज नाव है नाव पर बहुत सारा--

आदमी व्हाइट कलर का सेट पहना हुआ है।

टेबल भी है टेबल के सामने एक बेड भी दिख रहा है बहुत सुंदर है टी_वी भी ऊपर--